और वाटरमेलन ग्रेप्स ग्वावा ऑरेंज लीची और ऐसे बहोत सारे फ्रुट रखें हुए है।

अरे इसके साथ में चारों तरफ एक हरियाली सा पेड़ भी लगा दिया गया है डिजाइन के तौर पर जो काफी खूबसूरत लग रहा है और इस फ्रूट की शोभा बड़ा रहा--

और एक दुकान के आगे खड़े हैं जिसका शटर बंद है।

आप देख सकते हैं एक बस्ती भी बसी हुई है घर वगैरा दिख रहा है पास में पेड़ पौधे भी दिख रहे--

इसके अंदर कुछ मैटर्स रखे हुए हैं गद्दे रखे हुए हैं।

और ये एक मॉल टाइप का लग रहा है यहां पर और भी बहोत सारे आइटम्स रखे हुए हैं।

यह एक किसी ऑफिस का फोटो है जिसकी बाहर--

यहां पर कुछ ऐसे पेड़ है जो बिल्कुल सूखें हुए है जिन्हों में कोई भी पत्ते नहीं है।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर एक ग्राउंड है जिसमें काफी सारी सीट्स लगी हुई हैं।

और यहां पर अलग अलग प्रकार के पेंट भी रखे हुए हैं।

ऊपर एक स्लैप है स्लैप के ऊपर एक स्टार बना हुआ है।

यह एक घर है एक बिल्डिंग है जिसके नीचे एक शॉप है।

एक झंडे भी हैं कलरफूल के तरीके के फ्लैग लगे हुए हैं रेड नीले ब्लू ।